जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते है ये कुछ महल जैसा दिख रहा हैं और यहां पे कुछ बच्चे अंदर जा रहे हैं और इसका एन्ट्रन्स गेट बहुत ही प्यारा है।